मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का पावन पर्व
मन की बात के माध्यम से हम सबने एक साथ एक यात्रा का प्रारम्भ किया था
मन की बात इस यात्रा के आज 50 एपिसोड पूरे हो गए हैं
इस तरह आज ये गोल्डेन जुबिली एपिसोड स्वर्णिम एपिसोड है
इस बार आपके जो पत्र और फ़ोन आये हैं अधिकतर वे इस 50 एपिसोड के सन्दर्भ में ही हैं
माइगोव पर दिल्ली के अंशु कुमार अमर कुमार और पटना से विकास यादव इसी तरह से NarendraModiApp पर दिल्ली की मोनिका जैन बर्दवान वेस्ट बेंगल के प्रसेनजीत सरकार और नागपुर की संगीता शास्त्री इन सब लोगों ने लगभग एक ही तरह का प्रश्न पूछा है
उनका कहना है कि अक्सर लोग आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया और मोबाइल एप्स के साथ जोड़ते हैं लेकिन आपने लोगों के साथ जुड़ने के लिये रेडियो को क्यों चुना आपकी ये जिज्ञासा बहुत स्वाभाविक है कि आज के युग में जबकि करीब रेडियो भुला दिया गया था उस समय मोदी रेडियो लेकर के क्यों आया मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ
ये 1998 की बात है मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में हिमाचल में काम करता था
मई का महीना था और मैं शाम के समय ट्रैवल करता हुआ किसी और स्थान पर जा रहा था
हिमाचल की पहाड़ियों में शाम को ठण्ड तो हो ही जाती है तो रास्ते में एक ढाबे पर चाय के लिये रुका और जब मैं चाय के लिए आर्डर किया तो उसके पहले वो बहुत छोटा सा ढाबा था एक ही व्यक्ति खुद चाय बनाता था बेचता था
ऊपर कपड़ा भी नहीं था ऐसे ही रोड के किनारे पर छोटा साठेला लगा के खड़ा था
तो उसने अपने पास एक शीशे का बर्तन था उसमें से लड्डू निकाला पहले बोला साहब चाय बाद में लड्डू खाइए
मुँह मीठा कीजिये
मैं भी हैरान हो गया तो मैंने पूछा क्या बात है कोई घर में कोई शादीवादी कोई प्रसंगवसंग है क्या उसने कहा नहींनहीं भाईसाहब आपको मालूम नहीं क्या अरे बहुत बड़ी खुशी की बात है वो ऐसा उछल रहा था ऐसा उमंग से भरा हुआ था तो मैंने कहा क्या हुआ अरे बोले आज भारत ने बॉम्ब फोड़ दिया है
मैंने कहा भारत ने बॉम्ब फोड़ दिया है मैं कुछ समझा नहीं तो उसने कहा देखिये साहबरेडियो सुनिये
तो रेडियो पर उसी की चर्चा चल रही थी
तो उसने कहा उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वो परमाणु परीक्षण का दिन था और मीडिया के सामने आकर के घोषणा की थी और इसने ये घोषणा रेडियो पर सुनी थी और नाच रहा था और मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इस जंगल के सुनसान इलाके में बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक सामान्य इंसान जो चाय का ठेला लेकर के अपना काम कर रहा है और दिनभर रेडियो सुनता रहता होगा और उस रेडियो की ख़बर का उसके मन पर इतना असर था इतना प्रभाव था और तब से मेरे मन में एक बात घर कर गयी थी कि रेडियो जनजन से जुड़ा हुआ है और रेडियो की बहुत बड़ी ताकत है
कम्यूनिकेशन की रीच और उसकी गहराई शायद रेडियो की बराबरी कोई नहीं कर सकता ये मेरा उस समय से मेरे मन में भरा पड़ा है और उसकी ताकत का मैं अंदाज करता था
तो जब मैं प्रधानमंत्री बना तो सबसे ताकतवर माध्यम की तरफ़ मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था
और जब मैंने मई 2014 में एक प्रधानसेवक के रूप में कार्यभार संभाला तो मेरे मन में इच्छा थी कि देश की एकता हमारे भव्य इतिहास उसका शौर्य भारत की विविधताएँ हमारी सांस्कृतिक विविधताएँ हमारे समाज के रगरग में समायी हुई अच्छाइयाँ लोगों का पुरुषार्थ जज़्बा त्याग तपस्या इन सारी बातों को भारत की यह कहानी जनजन तक पहुँचनी चाहिये
देश के दूरसुदूर गावों से लेकर मेट्रो सिटीज तक किसानों से लेकर के युवा प्रोफेशनल्स तक और बस उसी में से ये मन की बात की यात्रा प्रारंभ हो गयी
हर महीने लाखों की संख्या में पत्रों को पढ़तेफोन कॉल्स सुनते App और माइगोव पर कमेंट देखते और इन सबको एक सूत्र में पिरोकर के हल्कीफुल्की बातें करतेकरते 50 एपिसोड की एक सफ़र ये यात्रा हम सबने मिलकर के कर ली है
हाल ही में आकाशवाणी ने मन की बात पर सर्वे भी कराया
मैंने उनमें से कुछ ऐसे फीडबैक को देखा जो काफी दिलचस्प हैं
जिन लोगों के बीच सर्वे किया गया है उनमें से औसतन 70 नियमित रूप से मन की बात सुनने वाले लोग हैं
अधिकतर लोगों को लगता है कि मन की बात का सबसे बड़ा योगदान ये है कि इसने समाज में पॉजिटिविटी की भावना बढ़ायी है
मन की बात के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनआन्दोलनों को बढ़ावा मिला है
indiapositiveको लेकर व्यापक चर्चा भी हुई है
ये हमारे देशवासियों के मन में बसी पॉजिटिविटी की भावना की सकारात्मकता की भावना की भी झलक है
लोगों ने अपना ये अनुभव भी शेयर किया है कि मन की बात से वॉलंटियरिज्म यानी स्वेच्छा से कुछ करने की भावना बढ़ी है
एक ऐसा बदलाव आया है जिसमें समाज की सेवा के लिए लोग बढ़चढ़ करके आगे आ रहे हैं
मुझे यह देखकर के खुशी हुई कि मन की बात के कारण रेडियो और अधिक लोकप्रिय हो रहा है
लेकिन यह केवल रेडियो ही नहीं है जिसके माध्यम से लोग इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं
लोग टीवी एफ़एम रेडियो मोबाइल इन्टरनेट फ़ेसबुक लाइव औरperiscope के साथसाथ NarendraModiApp के माध्यम से भी मन की बात में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं
मैं मन की बात परिवार के आप सभी सदस्यों को इस पर विश्वास जताने और इसका हिस्सा बनने के लिये अंतःकरणपूर्वक धन्यवाद देता हूँ
फ़ोन कॉल1
आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते मेरा नाम शालिनी है और मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ
मन की बात कार्यक्रम जनता के बीच एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है
प्रारम्भ में लोगों ने सोचा कि यह कार्यक्रम भी एक राजनीतिक मंच बनकर ही रह जाएगा और आलोचना का विषय भी बना
परन्तु जैसेजैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ा हमने देखा कि राजनीति के स्थान पर यह सामाजिक समस्याओं और चुनौतियों पर ही केन्द्रित रहा और इस तरह मेरे जैसे करोड़ों सामान्य लोगों से जुड़ता गया
धीमेधीमे आलोचना भी समाप्त हो गयी
तो मेरा प्रश्न यह है कि आप इस कार्यक्रम को किस प्रकार राजनीति से दूर रखने में सफल रहे
क्या कभी आपका ऐसा मन नहीं हुआ कि आप इस कार्यक्रम को राजनीति के लिये उपयोग कर सकें या फिर इस मंच से अपनी सरकार की उपलब्धियाँ गिना सकें धन्यवाद
फ़ोन कॉल समाप्त
आपके फ़ोनकॉल के लिए बहुतबहुत धन्यवाद
आपकी आशंका सही है
दरअसल नेता को माइक मिल जाए और लाखोंकरोड़ों की संख्या में सुनने वाले हों तो फिर क्या चाहिये कुछ युवा मित्रों ने मन की बात में आए सब विषयों पर एक स्टडी की
उन्होंने सारे एपिसोड का लेक्सिकल एनालिसिस किया और उन्होंने अध्ययन किया कि कौन से शब्द कितनी बार बोले गए कौन से शब्द हैं जो बारबार बोले गए उनकी एक फाइंडिंग यही है कि यह कार्यक्रम अपोलिटिकल रहा
जब मन की बात शुरू किया था तभी मैंने तय किया था कि न इसमें पॉलिटिक्स हो न इसमें सरकार की वाहवाही हो न इसमें कहीं मोदी हो और मेरे इस संकल्प को निभाने के लिये सबसे बड़ा संबल सबसे बड़ी प्रेरणा मिली आप सबसे
हर मन की बात से पहले आने वाले पत्रों ओनलाइन कमेंट्स फोनकॉल्स इनमें श्रोताओं की अपेक्षाएँ साफ़ होती हैं
मोदी आएगा और चला जाएगा लेकिन यह देश अटल रहेगा हमारी संस्कृति अमर रहेगी
130 करोड़ देशवासियों की छोटीछोटी यह कहानियाँ हमेशा जीवित रहेंगी
इस देश को नयी प्रेरणा में उत्साह से नयी ऊंचाइयों पर लेती जाती रहेंगी
मैं भी कभीकभी पीछे मुड़कर के देखता हूँ तो मुझे भी बहुत बड़ा आश्चर्य होता है
कभी कोई देश के किसी कोने से पत्र लिखकर कहता है हमें छोटे दुकानदारों ऑटो चलाने वालों सब्जी बेचने वालों ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा मोलभाव नहीं करना चाहिये
मैं पत्र पढता हूँ ऐसा ही भाव कभी किसी और पत्र में आया हो उसको साथ गूँथ लेता हूँ
दो बातें मैं अपने अनुभव की भी उसके साथ शेयर कर लेता हूँ आप सबके साथ बाँट लेता हूँ और फिर न जाने कब यह बात घरपरिवारों में पहुँचती है सोशल मीडिया और WhatsApp पर घूमती है और एक परिवर्तन की ओर बढ़ती रहती है
आपकी भेजी स्वच्छता की कहानियों ने सामान्य लोगों के ढ़ेर सारे उदाहरणों ने न जाने कब घरघर में एक नन्हा स्वच्छता का ब्रांड एम्बासाडोर खड़ा कर दिया है जो घरवालों को भी टोकता है और कभीकभी फोन कॉल कर प्रधानमंत्री को भी आदेश देता है
कब किसी सरकार की इतनी ताक़त होगीकि सेल्फीविथडॉगटर की मुहिम हरियाणा के एक छोटे से गाँव से शुरू होकर पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी फैल जाए
समाज का हर वर्ग सेलिब्रिटीज सब जुड़ जाएँ और समाज में सोचपरिवर्तन की एक नयी मॉडर्न लैंग्वेज में जिसे आज की पीढ़ी समझती हो ऐसी अलख जगा जाये
कभीकभी मन की बात का मजाक भी उड़ता है लेकिन मेरे मन में हमेशा ही 130 करोड़ देशवासी बसे रहते हैं
उनका मन मेरा मन है
मन की बात सरकारी बात नहीं है यह समाज की बात है
मन की बात एक एस्पिरेशनल इंडियामहत्वाकांक्षी भारत की बात है
भारत का मूलप्राण राजनीति नहीं है भारत का मूलप्राण राजशक्ति भी नहीं है
भारत का मूलप्राण समाजनीति है और समाजशक्ति है
समाज जीवन के हजारों पहलू होते हैं उनमें से एक पहलू राजनीति भी है
राजनीति सबकुछ हो जाए यह स्वस्थ समाज के लिए एक अच्छी व्यवस्था नहीं है
कभीकभी राजनीतिक घटनाएँ और राजनीतिक लोग इतने हावी हो जाते हैं कि समाज की अन्य प्रतिभाएँ और अन्य पुरुषार्थ दब जाते हैं
भारत जैसे देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए जनसामान्य की प्रतिभाएँ पुरुषार्थ को उचित स्थान मिले यह हम सबका एक सामूहिक दायित्व है और मन की बात इस दिशा में एक नम्र और छोटा सा प्रयास है
फ़ोन कॉल2
नमस्ते प्रधानमंत्री जी मैं प्रोमिता मुखर्जी बोल रही हूँ मुंबई से
सर मन की बात का हर एपिसोड गहरी इनसाइट से जानकारी इन्फॉर्मेशन से पॉजिटिव स्टोरीज से और आम आदमी के अच्छे कामों से भरा हुआ होता है
तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हर प्रोग्राम से पहले आप कितना प्रीपेयर करते हैं
फ़ोन कॉल के लिए आप का बहुतबहुत धन्यवाद आपका सवाल एक प्रकार से अपनेपन से पूछा सवाल है
मैं मानता हूँ मन की बात के 50 एपिसोड की सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि आप प्रधानमंत्री से नहींजैसे अपने एक निकट साथी से सवाल पूछ रहे हैं
बस यही तो लोकतंत्र है
आपने जो सवाल पूछा है अगर मैं सीधे शब्दों में उत्तर दूँ तो कहूँगा कुछ भी नहीं
actually मन की बात मेरे लिए बहुत ही आसान काम है
हर बार मन की बात से पहले लोगों के पत्र आते हैं
माइगोव और नरेंद्र मोदी मोबाइल App पर लोग अपने विचार शेयर करते हैं
एक टॉल फ्री नंबर भी है 1800117800 वहाँ कॉल करके लोग अपने सन्देश अपनी आवाज़ में रेकॉर्ड भी करते हैं
मेरी कोशिश रहती है कि मन की बात से पहले ज्यादा से ज्यादा पत्र और कमेंट्स खुद पढूँ
मैं काफी सारे फ़ोन कॉल भी सुनता हूँ
जैसेजैसे मन की बात का एपिसोड करीब आता है तो ट्रैवेलिंग के दौरान आपके द्वारा भेजे गए आईडीईएएस और इनपुट्स को मैं बहुत बारीकी से पढ़ता हूँ
हर पल मेरे देशवासी मेरे मन में रचे बसे होते हैं और इसलिए जब भी कोई पत्र पढ़ता हूँ तो पत्र लिखने वाले की परिस्थिति उसके भाव मेरे विचार का हिस्सा बन जाते हैं
वो पत्र मेरे लिए सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं रहता है और वैसे ही मैंने करीब 4045 साल अखंड रूप से एक परिव्राजक का जीवन जीया है और देश के अधिकतर जिलों में गया हूँ और देश के दूरदराज जिलों में मैंने काफी समय भी बिताया है
और इसके कारण जब मैं पत्र पढ़ता हूँ तो मैं उस स्थान और सन्दर्भ से आसानी से अपने आप को रिलेट कर पाता हूँ
फिर मैं कुछ फैक्चुअल चीज़ों को जैसे गाँव व्यक्ति का नाम उन चीज़ों को नोट कर लेता हूँ
सच पूछो तो मन की बात में आवाज़ मेरी है लेकिन एक्जाम्पल्स इमोशंस और स्पिरिट मेरे देशवासियों के ही हैं
मैं मन की बात में योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ
ऐसे लाखों लोग हैं जिनका नाम मैं आज तक मन की बात में नहीं ले पाया लेकिन वो बिना निराश हुए अपने पत्र अपने कमेंट्स भेजते हैं आपके विचार आपकी भावनाएं मेरे जीवन में बहुत ही महत्व रखती हैं
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी की बातें पहले से कई गुना ज़्यादा मुझे मिलेंगी और मन की बात को और रोचक और प्रभावी और उपयोगी बनाएगी
यह भी कोशिश की जाती है कि जो पत्र मन की बात में शामिल नहीं हुए उन पत्रों और सुझावों पर सम्बंधित विभाग भी ध्यान दें
मैं आकाशवाणीएफ़एम रेडियो दूरदर्शन अन्य tव
चैनल्स सोशल मीडिया के मेरे साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ
उनके परिश्रम से मन की बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाती है
आकाशवाणी की टीम हर एपिसोड को बहुत सारी भाषाओं में प्रसारण के लिए तैयार करती है
कुछ लोग बखूबी रिजनल लैंग्वेज में मोदी से मिलतीजुलती आवाज़ में और उसी लहज़े से मन की बात सुनाते हैं
इस तरह से वे उस 30 मिनिट्स के लिए नरेन्द्र मोदी ही बन जाते हैं
मैं उन लोगों को भी उनके टैलेंट और स्किल्स के लिए बधाई देता हूँ धन्यवाद देता हूँ
मैं आप सबसे भी यह आग्रह करूँगा कि इस कार्यक्रम को अपनी स्थानीय भाषाओं में भी अवश्य सुनें
मैं मीडिया के अपने उन साथियों को हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपने चैनल्स पर मन की बात का हर बार नियमित रूप से प्रसारण करते हैं
कोई भी राजनैतिक व्यक्ति मीडिया से कभी भी खुश नहीं होता है उसे लगता है उसे बहुत कम कवरेज मिलता है या जो कवरेज मिलता है वो नेगेटिव होता है लेकिन मन की बात में उठाए गए कई विषयों को मीडिया ने अपना बना लिया है
स्वच्छता सड़क सुरक्षा ड्रग्स फ्री इंडिया सेल्फी विथ डॉगटर जैसे कई विषय हैं जिन्हें मीडिया ने इनोवेटिव तरीके से एक अभियान का रूप देकर आगे बढ़ाने का काम किया
चैनल्स ने इसको मोस्ट वॉच्ड रेडियो प्रोग्राम बना दिया
मैं मीडिया का हृदय से अभिनन्दन करता हूँ
आपके सहयोग के बिना मन की बात की यह यात्रा अधूरी ही रहती
फ़ोन कॉल 3
नमस्ते मोदी जी मैं निधि बहुगुणा बोल रही हूँ मसूरी उत्तराखण्ड से
मैं दो युवा बच्चों की माँ हूँ
मैंने अक्सर यह देखा है कि इस उम्र के बच्चे यह पसंद नहीं करते कि उन्हें कोई बताए कि उन्हें क्या करना है चाहे वे टीचर्स हों या वे उनके मातापिता हों
पर जब आपके मन की बात होती है और आप बच्चों से कुछ कहते हैं तो वे दिल से समझते हैं और उस बात को करते भी हैं तो आप हमसे इस सीक्रेट को शेयर करेंगे क्या क्या जिस तरह से आप बोलते हैं या जो आप इश्यू उठाते हैं कि वे बच्चे अच्छी तरह समझ के इम्प्लीमेंट करते हैं
फ़ोन कॉल समाप्त
निधि जी आपके फ़ोन कॉल के लिए बहुतबहुत धन्यवाद
दरअसल मैं कहूँ तो मेरे पास तो कोई सीक्रेट नहीं है
जो मैं कर रहा हूँ वो सब परिवारों में भी होता भी होगा
सरल भाषा में कहूँ तो मैं अपने आप को उस युवा के अन्दर ढाल लेने का प्रयास करता हूँ खुद को उसकी परिस्थितियों में रखकर उसके विचारों के साथ एक सामंजस्य बैठाने एक वेव लेंग्थ मैच करने की कोशिश करता हूँ
हमारे ख़ुद के ज़िंदगी के वो पुराने baggagesहैं जब वो बीच में नहीं आते हैं तो किसी को समझना आसान हो जाता है
कभीकभी हमारे पूर्वाग्रह ही संवाद के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाते हैं
स्वीकारअस्वीकार और प्रतिक्रियाओं की बजाय किसी की बात को समझना मेरी प्राथमिकता रहती है
मेरा अनुभव रहा है कि ऐसे में सामने वाला भी हमें कन्विंस करने के लिए भांतिभांति के तर्क या दबाव बनाने की बजाय हमारी वेवलेंग्थ पर आने का प्रयास करता है
इसीलिए कम्यूनिकेशन गैप खत्म हो जाता है फिर एक प्रकार से उस विचार के साथ हम दोनों सहयात्री बन जाते हैं
दोनों में से पता ही नहीं चलता है कि कब और कैसे एक ने अपना विचार छोड़कर दूसरे का स्वीकार कर लिया है ownकर लिया है
आज के युवाओं की यही खूबी है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिस पर स्वयं उन्हेंविश्वास नहीं हो और जब वो किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो फिर उसके लिए सब कुछ छोड़छाड़ कर उसके पीछे लग जाते हैं
अक्सर लोग परिवारों में बड़ों और टीनेजर्स के बीच कम्यूनिकेशन गैप की चर्चा करते हैं
दरअसल अधिकतर परिवारों में टीनेजर्स से बातचीत का दायरा बड़ा सीमित होता है
अधिकतर समय पढ़ाई की बातें या फिर आदतों और फिर लाइफस्टाइल को लेकर ऐसा कर ऐसा मत कर बिना किसी अपेक्षा के खुले मन से बातें धीरेधीरे परिवार में भी बहुत कम होती जा रही है और यह भी चिंता का विषय है
एक्सपेक्ट की बजाय एक्सेप्ट और डिसमिस करने की बजाय डिस्कस करने से संवाद प्रभावी बनेगा
अलगअलग कार्यक्रमों या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के साथ लगातार बातचीत करने का मेरा प्रयास रहता है
वे जो कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं उससे सीखने का मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूँ
उनके पास हमेशा आईडीईएएस का भण्डार होता है
वे अत्यधिक एनर्जेटिक इनोवेटिव और focussedहोते हैं
मन की बात के माध्यम से मैं युवाओं के प्रयासों को उनकी बातों को ज्यादा से ज्यादा साझा करने का प्रयास करता हूँ
अक्सर शिकायत होती है कि युवा बहुत ही अधिक सवाल करते हैं
मैं कहता हूँ कि अच्छा है कि नौजवान सवाल करते हैं
ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि इसका अर्थ हुआ कि वे सभी चीज़ों की जड़ से छानबीन करना चाहते हैं
कुछ लोग कहते हैं कि युवाओं में धैर्य नहीं होता लेकिन मेरा मानना है कि युवाओं के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है
यही वो चीज़ है जो आज के नौजवानों को अधिक इनोवेटिव बनने में मदद करती है क्योंकि वे चीज़ों को तेज़ी से करना चाहते हैं
हमें लगता है आज के युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं और बहुत बड़ीबड़ी चीज़ें सोचते हैं
अच्छा है बड़े सपने देखें और बड़ी सफलताओं को हासिल करें आखिर यही तो न्यू इंडिया है
कुछ लोग कहते हैं कि युवा पीढ़ी एक ही समय में कई चीज़ें करना चाहती है
मैं कहता हूँ इसमें बुराई क्या है वे मल्टीटास्किंग में पारंगत हैं इसलिए ऐसा करते हैं
अगर हम आसपास नज़र दौड़ायें तो वो चाहे सोशल आंत्रप्रिन्योरशिप हो स्टार्टअप्स हो स्पोर्ट्स हो या फिर अन्य क्षेत्र समाज में बड़ा बदलाव लाने वाले युवा ही हैं
वे युवा जिन्होंने सवाल पूछने और बड़े सपने देखने का साहस दिखाया
अगर हम युवाओं के विचारों को धरातल पर उतार दें और उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए खुला वातावरण दें तो वे देश में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं
वे ऐसा कर भी रहे हैं
मेरे प्यारे देशवासियो गुरुग्राम से विनीता जी ने माइगोव पर लिखा है कि मन की बात में मुझे कल यानी 26 नवम्बर को आने वाले संविधान दिवस के बारे में बात करनी चाहिए
उनका कहना है यह दिन विशेष है क्योंकि हम संविधान को अपनाने के 70वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं
विनीता जी आपके सुझाव के लिए आपका बहुतबहुत धन्यवाद
हाँ कल संविधान दिवस है
उन महान विभूतियों को याद करने का दिन जिन्होंने हमारा संविधान बनाया
26 नवम्बर 1949 को हमारे संविधान को अपनाया गया था
संविधान ड्राफ्ट करने के इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन लगे
कल्पना कीजिये 3 वर्ष के भीतर ही इन महान विभूतियों ने हमें इतना व्यापक और विस्तृत संविधान दिया
इन्होंने जिस असाधारण गति से संविधान का निर्माण किया वो आज भी टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी का एक उदाहरण है
ये हमें भी अपने दायित्वों को रेकॉर्ड समय में पूरा करने के लिए प्रेरित करता है
संविधान सभा देश की महान प्रतिभाओं का संगम थी उनमें से हर कोई अपने देश को एक ऐसा संविधान देने के लिए प्रतिबद्ध था जिससे भारत के लोग सशक्त हों ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति भी समर्थ बने
हमारे संविधान में खास बात यही है कि अधिकार और कर्तव्य यानी राइट्स एंड Dutiesइसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है
नागरिक के जीवन में इन्हीं दोनों का तालमेल देश को आगे ले जाएगा
अगर हम दूसरों के अधिकार का सम्मान करेंगे तो हमारे अधिकारों की रक्षा अपने आप हो जायेगी और इसी तरह अगर हम संविधान में दिए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो भी हमारे अधिकारों की रक्षा अपने आप हो जायेगी
मुझे अभी भी याद है 2010 में जब भारत के गणतंत्र को 60 साल हुए थे तब गुजरात में हमने हाथी पर रख कर संविधान की शोभायात्रा निकाली थी
युवाओं में संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उन्हें संविधान के पहलुओं से जोड़ने के लिए ये एक यादगार प्रसंग था
वर्ष 2020 में एक गणतंत्र के रूप में हम 70 साल पूरे करेंगे और 2022 में हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जायेंगे
आइये हम सभी अपने संविधान के मूल्यों को आगे बढ़ाएँ और अपने देश में पीस प्रोग्रेशन प्रॉस्पेरिटी यानी शांति उन्नति और समृद्धि को सुनिश्चित करें
मेरे प्यारे देशवासियो संविधान सभा के बारे में बात करते हुए उस महापुरुष का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता जो संविधान सभा के केंद्र में रहे
ये महापुरुष थे पूजनीय डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर
6 दिसम्बर को उनका महापरिनिर्वाण दिवस है
मैं सभी देशवासियों की ओर से बाबा साहब को नमन् करता हूँ जिन्होंने करोड़ों भारतीयों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया
लोकतंत्र बाबा साहब के स्वभाव में रचाबसा था और वो कहते थे कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्य कहीं बाहर से नहीं आए हैं
गणतंत्र क्या होता है और संसदीय व्यवस्था क्या होती है ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है
संविधान सभा में उन्होंने एक बहुत भावुक अपील की थी कि इतने संघर्ष के बाद मिली स्वतंत्रता की रक्षा हमें अपने खून की आखिरी बूँद तक करनी है
वे यह भी कहते थे कि हम भारतीय भले ही अलगअलग बैकग्राउंड के हों लेकिन हमें सभी चीज़ों से ऊपर देशहित को रखना होगा
इंडिया फर्स्ट डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर का यही मूलमंत्र था
एक बार फिर पूज्य बाबा साहब को विनम्र श्रद्धांजलि
मेरे प्यारे देशवासियो दो दिन पहले 23 नवम्बर को हम सबने श्री गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई है और अगले वर्ष यानी 2019 में हम उनका 550वाँ प्रकाशपर्व मनाने जा रहे हैं
गुरु नानक देव जी ने सदा ही पूरी मानवता के कल्याण के लिए सोचा
उन्होंने समाज को हमेशा सत्य कर्म सेवा करुणा और सौहार्द का मार्ग दिखाया
देश अगले वर्ष गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती समारोह को भव्य रूप से मनायेगा
इसका रंग देश ही नहीं दुनियाभर में बिखरेगा
सभी राज्य सरकारों और केन्द्रीय शासित प्रदेशों से भी इस अवसर को धूमधाम से मनाने का अनुरोध किया गया है
इसी प्रकार गुरु नानक देव जी का 550वाँ प्रकाश पर्व विश्व के सभी देशों में भी मनाया जाएगा
इसके साथ ही गुरु नानक जी से जुड़े पवित्र स्थलों के मार्ग पर एक ट्रेन भी चलाई जायेगी
अभी हाल ही में जब मैं इससे जुड़ी मीटिंग कर रहा था तो उसी समय मुझे लखपत साहिब गुरुद्वारा की याद आई
गुजरात के 2001 के भूकंप के दौरान उस गुरूद्वारे को भारी नुकसान पहुँचा था लेकिन जिस प्रकार स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राज्य सरकार ने उसका जीर्णोद्धार कराया वो आज भी एक मिसाल है
भारत सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि करतारपुर कॉरिडोर बनाने का ताकि हमारे देश के यात्री आसानी से पाकिस्तान में करतारपुर में गुरु नानक देव जी के उस पवित्र स्थल पर दर्शन कर सकें
मेरे प्यारे देशवासियो 50 एपिसोड के बाद हम फिर एक बार मिलेंगे अगले मन की बात में और मुझे विश्वास है कि आज मन की बात के इस कार्यक्रम के पीछे की भावनाओं को मुझे पहली बार आपके समक्ष कहने का मौका मिला क्योंकि आप लोगों ने ऐसे ही सवाल पूछे लेकिन हमारी यात्रा जारी रहेगी
आपका साथ जितना ज्यादा जुड़ेगा उतनी यात्रा हमारी और गहरी होगी और हर किसी को संतोष देनेवाली मिलेगी
कभीकभी लोगों के मन में सवाल उठता है कि मन की बात से मुझे क्या मिला मैं आज कहना चाहूँगा कि मन की बात के जो फीडबैक आते हैं उसमें एक बात जो मेरे मन को बहुत छू जाती है
अधिकतम लोगों ने ये कहा कि जब हम परिवार के सब लोगों के साथ बैठकर के मन की बात सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारे परिवार का मुखिया हमारे बीच में बैठ करके हमारी अपनी ही बातों को हमारे साथ शेयर कर रहा है
जब ये बात मैंने व्यापक रूप से सुनी मुझे बहुत संतोष हुआ कि मैं आपका हूँ आप में से ही हूँ आपके बीच हूँ आप ही ने मुझे बड़ा बनाया है और एक प्रकार से मैं भी आपके परिवार के सदस्य के रूप में ही मन की बात के माध्यम से बारबार आता रहूँगा आपसे जुड़ता रहूँगा
आपके सुखदुःख मेरे सुखदुःख
आपकी आकांक्षा मेरी आकांक्षा
आपकी महत्वाकांक्षा मेरी महत्वाकांक्षा
आइये इस यात्रा को हम और आगे बढ़ाएँ
बहुतबहुत धन्यवाद